गाड़ी के पीछे कुछ नाम लिखा है।

ये घर है उसके पास में बहुत सारे पौधे लगे हैं।

और एक आदमी खड़ा है उसके पास एक बाइक के अंदर कुछ बंदे बैठे हुए दिख रहे है लुगाई वगैरा--

ये कोई कील्ला हैं उसके आगे वायरिंग बहुत सारी खंबा लगे हुए हैं तारे निकली हुई हैं बाइके के खड़ी है बहुत सारी--

फोन मंडे हुए है और ब्लूटूथ सब सिम टैप वगैरा--